यह फोटो एक मैकेनिक्स की दुकान की है। जहां पे हमें बहुत सारे लोहे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।